हां एक मछली मार्केट है जो की यहां पर छोटी-मोटी बड़ी सब मछली मिलती है यहां पर कटे हुए भी रखी है यहां राइट साइड कैमरा लगे हुए हैं यहां पर एक अंकल कुर्सी पर बैठे हैं|